जिसमें कोड आ रहा है एट एट एट उसके पास में बहुत सारी मशीनें पड़ी है पास ही में एक टेबल लगी हुई है।

ऑरेंज कलर के होर्डिग लगे हुए हैं पास ही में एक बिल्डिंग है जिसका कलर है सफेद और नीला और उस एरोप्लेन --

एक बिल्डिंग है जहां पे लिखा हुआ है बोर्ड लगा हुआ है।